और यहां पे कुछ जाली लगी हुई है। कुछ पानी की बोतले पड़ी है और कुछ लोग भी खड़े हैं।

और ये टाइलों वाली डोर बनी हुई हैं।

काफी सारे लोग खड़े हैं और एक नाव भी है और बादल दिखाई दे रहे हैं।

और आसपास में मिरर लगे हुए हैं बाइक खड़ी हैं।

ये एक मोटर पार्ट्स की दुकान है टायर पिंजर की दुकान लग रही है और यहां पे नट खोलने वाली मशीने भी है और कुछ--